दो पहिया वाहन है चार पहिया वाहन है बड़े बड़े खंबे दिख रहे है आसमान दिख रहा है।

कैट सीएट सी ए टी कैट फ्यूल स्मार्ट टायर नाम से दिख रहा है बड़े-बड़े टायर रखे--

घर बना हुआ दिख रहा है पत्थर की फर्श लगी जमीं दिख रही--

एक खंबा भी दिख रहा है और एक कार भी पानी मे डूब रही है।

यहाँ बहुत सारी बाइक और कार दिख रहे है रोड पे आदमी पेट्रोल डालता हुआ दिख रहा है नीली कलर की--